साइड में बहुत सारी खिड़कियां हैं और कुछ गणेश लगे हुए हैं।

आसमान बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है कलरफुल दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक ए सीनरी सीन ।

सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने बाल कटवाया हुआ है और अपने बालों पर --

पिंक कलर की शर्ट पहन कर बैठे हुए हैं सामने में बांस की टोकरी में बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियां रखी हुई हैं ।

मालाएं टंगी हुई हैं जो गेंदे बेले गुलाब की फूल की बनी हुई है साइड मे कैरट मे कुछ पत्ते रखे हैं |

सामने बहुत खूबसूत पहाड़ी दिखाई दे रही है नदी के उस पार जिससे और बादल बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे है ।

शायद ये दूध की पाकेट्स है जो काफी अच्छी तरीके से एक दूसरे से ऊपर जमा कर रखे गए हैं।

सामने एक ट्राली भी दिखा ट्राली रिक्सा गाड़ी भी दिखाई दे रही है माल धोने वाली | एक बाइक खड़ी हुई है |

साइड में हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं हल्की-हल्की बहुत सारी सामने --

घर बिल्डिंग्स बनी हुई दिखाई दे रही है रोड पर बहुत सारे लोग आ रहे है जा रहे है --